लाइट जल रही हैं। यहाँ पे बहोत सारी पब्लिक हैं।

शॉप है। दुकान है। जहाँ पे --

ये एक हवाई अड्डा हैं।